जेसा की हम देख सक्ते है सामने मे सिंगर दिख रहा है कोई चर्च बना दिख रहा है चर्च मे हमको बीच मे ईसामासी की मूर्ति दिख रही है।

जैसे की हम देख सकते हैं सामने हमको एक आदमी दिख रहा है जो काला सा दिख रहा है ये सामने की ओर देख रहा है पीछे कंप्यूटर लगा हुआ है इसमें कुछ स्क्रीन पर काम चलते हुए दिख रहा है। पीछे हमको दीवारे दिख रही है।

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हमको बहुत सुन्दर नजारा दिख रहा है। हमको एक लड़की दिख रही है। लड़की हमको मशीन में कुछ काम करते हुए दिख रही हैं उसके आगे मशीन रखी हुयी हैं जो की हरे कलर की उस पे ग्रे कलर की मशीन हैं। ऊपर पाइप से पानी आते हुए दिख रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने बहोत सुंदर नजारा दिख रहा है हमको एक लड़का दिख रहा है जो ब्लेजर में पे कपड़े पहने खड़ा हुआ है इसका बेल्ट दिख रहा है गले में टाई दिख रही है शर्ट दिख रहा है जो की व्हाइट कलर का दिख रहा है।

चश्मा पहना हुआ दिख रहा है पीछे हमको स्टेज बना हुआ दिख रहा है फोटो खींचाने के लिए दिल बने हुए हैं दो पीछे हमको फ्लावर्स का डेकोरेशन दिखाया है सभी आर्टिफिशियल फ्लावर दिख रहे हैं गुलाबी पर्दे लगे --

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने एक बहोत ही सुन्दर नजारा दिख रहा है बहोत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है सामने की और जो देख सकते है वह बहोत ही अच्छा दिख रहा है एक गाड़ी दिख रही है जो की सफ़ेद कलर की दिख रही है दूसरी गाड़ी वो भी सफेद कलर की दिख रही है।

जैसा की हम देख सकते है सामने बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है हमको कुछ लोग दिख रहे हैं जो की योगा करते हुए दिख रहे है सभी लेडीसे दिख रही है जो की एक पांव जमीन पर और एक पांव दूसरे पांव पर टीका हुआ दिख रहा है पीछे सबके दीवारें दिख रही है।